दूसरी तरफ़ कुछ नागरिक सामान लेने के लिए आये हुए है यहाँ पर नंबर दे रखा हुआ है नागरिक को सामान लेने की तैयारी कर रहे है ।

मस्‍त है ये एक जनरल बस स्‍टैंड है कुछ नागरिक इस बस का वेट कर रहे हैं कुछ स्‍टूडेंट भी रोड क्रॉस कर रहे हैं ।

दोस्त ये स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं जिस पर जिस के अंदर दो पड़ी हुईं हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड थोडासा टूटा हु--

के अंदर बहुत बड़ी लाइट भी लगी हुई है और एक नागरिक भी यहां से गुजरनी है बिराजमान है--

नमस्‍ते यहां पे हैवी बाइक को मटेरियल्‍स का काम किया जा रहा है और नागरिक ने --

पेट्रोल फिलिंग स्टेशन है कुछ नागरिक अपनी गाड़ीया लगा कर पेट्रोल की फिलिंग करवा रहे है पेट्रोल फुल करवा रहे है बारकोड --

नमस्ते यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी किस्म की --

दू दू दू दुकान के अंदर एक बल्ब जल रहा है और नीचे बहुत ही अच्छी किसम का फर्स लगवा है और कुछ बुलियानिक यहाँ पर आये हुए है ।

नमस्ते यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी किसम का गराज नज़र रॉड आ रहा है जिसके सतह पर बहुत ही अच्छे गमले रखे जायेंगे --

कुछ साइडो पे घने पेड़ है साइडो पर दो गाड़िया भी पार्क की गई है दूसरी बहुत ही सुंदर किसम कि ली नज़र आ रही है जो कि --

और आपके ऊपर एक --

मोआईना कर रहे हैं उस्‍ताद बच्‍चों को तालि‍म दे रहा है और बच्‍चे सब इकट्ठा होकर --

आदमी नंगे पाओ अंदर जा रहे हैं और अंदर जाकर इसके --

पैक बहुत ही अच्‍छे है और सब्जियों को बहुत ही अच्‍छी किस्‍म से रखा गया है सेब अमरूद केला --

दूर दूर तक बिल्डिंग ही बिल्डिंग है और नागरिक ही नागरिक जमा है ये बहुत ही सुन्दर लग रहे है देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे यह --

नमस्ते ये एक शादी हाल के इस्तेमाल गे रहा है ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर किसी दूल्हा और दुल्हन ने आना है ।

बहुत ही सुंदर किसम का हॉल है हॉल के ऊपर बहुत सारी लाइटें लगी हुई है जो कि ब्‍हाईट कलर की है और ऊपर सीलिंग --

जो कि सुंदर किसम की दिखाई देते है जिसके अंदर फूल भी विराजमान हो जाते है ।

सुकून और समावन के मुतेहन भी बनाई गई है और ये बहुत ही अच्छी है और इसमे कुछ आउटर भी पड़े हुए है जिससे कि आउटर भी पड़े हुए है ।